यह फोटो बुक वर्ल्ड की दुकान का है।

यहां पर बोहोत सारे टूल्स भी रखे गए हैं।

यह फोटो शादी के अ वैन्यू का है।

यह फोटो साइंस लैब का है।

यह फोटो एक लैब जांच का हैं।

यह फोटो एक्वेरियम की दुकान का है।

आज एक्वेरियम की सफाई का सामान भी--

और यहां पर बहुत सारे पत्तियां भी है।

यहां पर बहुत सारे टूल्स की रखे हुए हैं।

यह किला पुराने जमाने का प्रतीत हो रहा है।